यह एक बहोत अच्छा ग्राउंड है।

यह एक लाइब्रेरी है इसमें बच्चे पढ़ने आते हैं इसमें कंप्यूटर भी अने अलग प्रकार से दिए जाते हैं।

जैसे कि कॉफी और बहुत सारी चीजें--

और इस में बहुत बहुत बच्चे पढ़ने आते हैं।

मार्केट है इसमें हम हर प्रकार की सब्जी व फल फ्रूट ले सकते हैं।

और इसमें रेस्टोरेंट की एंट्री है।

इसमें हमारा शरीर की छाती चौड़ी हो जाती है।

इसमें तीन तीन छः सात आठ आठ कैंपर रखे हुए हैं।

यह एक स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है उस स्टेडियम का हमें नाम नहीं पता।

यहां पर मरीजों का इलाज होता हैं जिन्हें गोलियों की जरूरत न होकर अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरत लगती हैं ये एक चिकित्सालय है।

यह है पंडित जी का मशहूर ढाबा वैष्णव ढाबा यहां पेर अच्छा भोजन मिलता है।

यह एक सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया का ए_टी_एम है इसमें हम अन्य अपने काम कर सकते है यहां पे एंट्री भी हो सकती है।

और यहां पर स्ट्रेचेबल सब कुछ होता है गोली से लेके एक बड़ी से लेके छोटी तक ।

यह एक बहुत ही अच्छी पिक है यह एक बहुत अच्छी पिक है और ये शादी में लगे इसमे से एक मेल है और तीन फीमेल है।

यहां की व्यवस्था बहुत अच्छी है यहां साफ सफाई रहती--

यहां पर साफ सफाई होती है यह रॉयल नाम से जाना जाता है।